नीचे के फ़र्श में मार्बल का यूज किया गया है।

एक रूम है जो की बहुत ही साफ सुथरा है इसमें एक बेड लगी हुई है बेड के ऊपर में बहुत ही मोटे गद्दा भी लगाया गया दो तकिया भी रखी गई है।

इसमें बहुत सारे व्यक्ति कतार में कुर्सियों पर बैठे हुए हैं। सभी कुर्सी का रंग लगभग लाल रंग का है।

ये एक बहुत ही बड़ा घर को दिखाया गया है जिसमें लिखा हुआ है मिस्टर रुद्रा नाथ साह राकेश।

और आस पास के क्षेत्र में बहुत सारे लोगों को भी दिखाया गया है और इसके अलावे भी बहुत सारा घर को भी दिखाया गया है।

टावर भी लगा हुआ आसपास के क्षेत्र में बहुत सारे पेड़ पौधे भी दिखाए गए हैं जो कि हरे भरे हैं।

इसमें एक टोटो का फोटो दिखाया गया है जोकि पीला रंग से पेंट किया हुआ है।

और इसके आजू बाजू बहुत सारे बच्चे को भी दिखाया गया है।

अमूल कंपनी का बहुत सारा चीज सामान रखा गया है कुछ पैकेट में है तो कुछ डब्बा में भी रखा गया है।

यह बहुत ही साफ सुथरा एक घर को दिखाया गया है जिसमें बहुत सारे बेंच भी लगे हुए हैं और कुर्सियां भी लगी हुई है।

इस फोटो में बहुत सारे कंप्यूटर को दिखाया गया हैं कुछ कम्प्यूटर पुराना है तो कुछ नया कम्प्यूटर को भी दिखाया गया हैं जो कि एक डेस्क के ऊपर रखा गया हैं।

आसपास के क्षेत्र में लाइटें बहुत ही अच्छी लगाई गई हैं बोर्ड को भी इस आकृति में दिखाया गया है।

आसपास का क्षेत्र में बहुत सारे सामान रखे हुए हैं और दीवारें व्हाइट कलर से पेंट की हुई है।

बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं तो बहुत सारे लोग खड़े भी हैं।

यह एक कपड़ा का दुकान है। जिसमें एक व्यक्ति सोफे पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं।

बहुत सारे कपड़े लगातार कतार में रखे गए हैं टांग के रखे हुए हैंगर में।

यह फोटो में कंस्ट्रक्शन एरिया का कुछ भाग दिखाया गया है जिसमें बहुत सारा बालू को भी दिखाया गया।

जिसमें की नीचे में एक सर्कल बना हुआ है कुछ प्लास्टिक से उसके बीचो बीच दोनों पैर रख के कुछ कंपटीशन खेल रहा है।